कौनो चीज के दुकान हवे। एक लड़की स्कूटी पे बैठ के आई है। वही बगलिया में एक हाफ सा चड्डा पहिन के आदमी जाता। नीला रंग के शर्ट पहिनले बा। बगल में पेड़ पौधा भी बा।

आमी ओमी के पेड़ ह बहुत सारा। सामने से रोड निकलल बा। कई सारे खिड़की बा।

एक बड़ा सा हॉल बा ओमे तीन गो लड़किया योगा करत बाटिन।